यहां एक बस खड़ी हुई हेेंगी जिसे बस से बाहर लोग बसों के अंदर चढ़ रहे है कुछ लोग बस पे बैठे हुए हेंगे।

वह दिए गए हैंगे बाहर एक आदमी खड़ा हुआ हैगा जो कि व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है ए_टी_एम के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई है।

और दुसरे साइड में दूर-दूर तक घर दिखाई दे रहे हैं काफी दूर पर और साइड में कुछ रखा हुआ है यहाँ तीन बच्चे हैं जो दो बच्चे हैं पीले कलर की टी-शर्ट पेहने हुए है एक बच्चा ब्लैक कलर की टी-शर्ट पेहना हुआ है तीन बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं।

उस पे हरी घास है और कच्चे रास्ता भी है काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं पेड़ो-पेड़ो का कलर हरा है।

ये एक किला है जो कि काफी पुराना लग रहा है खंडर टाइप का लग रहा है यहां पे पेड़-पौधे लगे है ग्रीन कलर के।

सब्जियों को काटा जा रहा है और फिर बनाएंगे और टेबल पर भी समान रखा हुआ है और कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं।